यहां पर एक कॉलेज और हॉस्पिटल की बस खड़ी हुई है जिसका कलर येलो है ।

यह एक जंगल की तरह दिखाई दे रहा है जिसका लुक बहुत ही शानदार आ रहा है।

वॉल का कलर व्हाइट है और टेक्सचर जो है वो ग्रीन और रेड कलर और गोल्डन कलर का है ।

यह पिंक है यहां पर एक शटर दिखाई दे रहा है शटर के पीछे ट्रांसपेरेंट क्लास लगा हुआ है जिसमे कुछ लोग दिखाई दे रहे है यहां पर जो वॉल का कलर है वह व्हाइट और रेड है ।